चेयर के उपर औरेंज कलर का कुशन लगा हुआ है।

ब्रिज के साइड बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं जो कि ग्रीनरी से भरपूर हैं।

सेल्फ में लगी हुई है और राइट साइड भी बहोत से सामान रखे हुए हैं।

लेफ्ट साइड एक गाड़ी पार्क्ड है और उसके आसपास बहुत से पेड़ पौधे भी रखे हुए हैं।

सबसे लेफ्ट साइड वाला घर वाइट रंग का है जिसमें दो खिड़की है और उसका सीलिंग टीन से बना है।

पोस्टर के नीचे तीन सिल्वर कलर के चेयर्स भी रखें हुए हैं।

फोटो में चारो तरफ बहोत से पेड़ पौधे दिख रहे हैं दिन का वक्त है नीला आसमान भी है।

दुकान के ऊपर तीन सीलिंग फैन भी लगा हुआ है और कई प्रकार की लाइटिंगस भी हैं।

यह चर्च बहोत बड़ा है और विशाल है और वाइट रंग का है और सबसे ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है।

बरामदा के साइड में बहोत से रंग बिरंगे वाश रखे हुए हैं।

सबसे राइट साइड एक व्यक्ति ग्राउंड में बैठा हुआ है।

यह फोटो में किसी सेलिब्रेशन का व्यू दिखाया गया है।

बहुत से फुल पौधे लगे हुए हैं और लेफ्ट साइड बहुत सी लाइटिंग सजाई हुई है।

जो कि लेफ्ट साइड एक बिल्डिंग भी दिख रहा है।

घाट के लेफ्ट साइड बहोत सी गीली मिट्टी भी देखी जा सकती है।

प्लेग्राउंड में बहुत सी लाइटिंगस लगी हुई हैं।

सबसे ऊपर सीलिंग फैन है राइट साइड दो चेयर है उसके राइट साइड खिड़की है जिसमें लाल रंग का पर्दा लगा हुआ है।

आस पास का मौसम पूरा हरियाली से भरा हुआ है और चारों तरफ बहुत से पेड़ पौधे है।

अंदर में दो लोग बैठे हुए हैं काउंटर में और एक डेस्क पे एक लड़की बैठी हुई है।

लेफ्ट एंड राइट साइड के वॉल में बहुत से चित्र बने हुए हैं।

उसके आगे एक बच्चे का बाल का कटिंग चल रहा है।

आगे के बच्चे ने नीला कलर का शर्ट पहना हुआ है।

फोटो में दिन का समय है नीला आसमान है और बादल के छाए हुए हैं।

लेफ्ट और राइटस साइड बहुत से टायर्स रखे हुए हैं।

ये फोटो में किसी व्हाइट कलर का स्टेचू दिखाया गया है।

राइट साइड एक व्यक्ति मोबाइल में फोन लिए जा रहा है।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

ऊपर की ओर फैंस लगाए हुए हैं और उसके नीचे बहुत से कार्टून बॉक्स रखे हुए हैं।

सीलिंग की ओर बहुत सी लाइटिंगस भी लगाई हुई हैं।